और बहुत बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

और कुछ पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है बहोत सारी फोटो फ्रेम दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।